यहाँ हमें एक पंडाल दिखाई दे रहा हैं जिसे लाल और पीले कलर से बनाया गया हैं। यहाँ पे --

बड़ी दिखाई दे रही हैं। यहाँ अलग-अलग जगह पे अलग-अलग मूर्तियों को रखा गया हैं। यहाँ पे हमें एक महिला मंदिर से बाहर आते नजर आ रही हैं।

वाहनो को रखा गया है जहाँ पे बहुत भीड़ दिखाई दे रहा है | यहाँ बहुत से लोग आये हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे --

और वहाँ हमे एक छोटा सा बैनर भी दिखाई रहा है और बाजू में एक गेट भी नजर आ रहा हैं।

पाइप की मदद से साफ करते दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बोहोत बड़ी सफ़ेद कलर की कार है जिसे एक व्यक्ती --

यहाँ हमे एक मस्जिद दिखाई दे रहा हमें यहाँ पे एक सफेद कलर का मस्जिद दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमे --

यहाँ हमें एक ऑफिस नजर आ रहा हैं जहाँ पे कुछ चेयर लगे हुए हैं। वहाँ पे एक व्यक्ती हमें सफ़ेद कलर की शर्ट पहने--

साइकिल जो जिम में यूज़ की जाती हैं वो दिखाई दे रही है | यहाँ पे उसी टाइप की साइकिल तीन ठो हमें नजर आ रही हैं।

छोटे-छोटे पत्थर भी नजर आ रहे हैं और हमें यहाँ पे साइड में छोटे-छोटे पेड़ भी --